यहाँ पर एक व्यक्ति देखा जा सकता है जो की उसके सामने एक स्कूटी खड़ी हुयी है वह उस पे शायद कुछ कर रहा है उसकी दसरी तरफ एक व्यक्ति है जो की एक टेबल पे बेठा हुवा है सामने अंदर बहुत सारे चीज सामन दिखाइ दे रहे हैं।

जिसपे वर्कर्स लोग काम कर रहे है यहाँ पे काले रंगे काले रंग की सभी लोगों ने कपड़े पेहन रखे है पीछे सफ़ेद कलर की एक वैन करके देखे है और पीछे ए कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है जोकि --

यहां पर बहुत सारे लोग एक साथ बैठे खड़े हुए हैं और वहां पे शायद कुछ मसाला वगेरा को मिला रहे है| अगल बगल बहोत सारी हरी हरी पेड़ वगेरा दिखाई दे रही है।

दो में तीन चार महिलाएं दिखाई दे रही हैं जो कि सभी ने एक जैसी ही ड्रेस पहन रखी है और वह नीचे ग्रीन कलर की कारपेट के ऊपर खड़ी हैं। अगल बगल बहोत सारे मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।